यह एक है। यह गार्डन काफी हरा भरा है। बहोत सारे फूल पौधे लगे हुए हैं।

यह एक जिम है। यह जिम में तरह - तरह की मशीनें हैं।

तरह-तरह के गेम खेलते। यहाँ पे बोहोत सारे आदमी कसरत भी सुबह-सुबह करते हैं। यहाँ पे सभी एकजुट होके --

यह एक सरकारी कार्यालय है। यह कार्यालय में बहोत सारे आदमी यहाँ पे आये हुए हैं। सभी लोग इस कार्यालय में --

यहाँ पे सभी लोग पूजा करने के लिये आये हुए हैं। इस मंदिर में बोहोत सारे फूल परसादी दीपक जलाए --